प्योर भेज रेस्टोरेंट यहां पर भेज खाना मिलता है बाहर में एक आइसक्रीम का--

जो फ्रीज होता है वो है पास मे एक दुकान है उसमे भी आइसक्रीम का फ्रिज है सामने में स्कूटर दो खड़ी है।

जो फ्रिज होता है वो दिखाई दे रहा है उसके अंदर कुछ सब ड्रिंक कोल्ड्रिंक्स रखा हुआ है।

बहोत सारे पेड़ है साइड में इस साइड एक गार्ड वॉल है लोहे का।

इसके सामने में एक बड़ा सा मार्ट दिखाई दे रहा यहां पे बहुत बच्चे लोग भी यहां पे खड़ा है कुछ--

ये एक ऑफिस के अंदर का चित्र है केबिन है यहां पे दो--

व्हील चेयर है और व्हाइट कलर का सामने ब्लैक कलर का टेबल है और--

यहां पे पहाड़ का चित्र है जो स्नो में भरा हुआ है ये जो ठंडी का जगह है।

सब पर्यटक लोग घूमने आया है यहां पे पेड़ भी है बहुत सारे दूर में घड़ भी है।

ये एक शॉपिंग मॉल का अंदर का चित्र है जहाँ पे बड़ा -बड़ा रैक है जहाँ पे बहुत सारा --

यहाँ पर स्कूल का चित्र दिखाई दे रहा है स्कूल का छात का सीन दिखाई दे रहा छात --

सामने जू में एक सेंटर टेबल है वुडेन का

एक बड़ा सा कोई ऑफिस का या स्कूल का बिल्डिंग है येलो कलर का तीन तला बिल्डिंग है बड़ा सा।

नीचे में कारपेट बीचा हुवा हैं ग्रीन कलर का पास में चियार में एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुवा हैं लाईट जल रहीं हैं रात का सीन हैं।

व्हाइट कलर का आगे पहन के है गले में कुछ के ऊपर में सीढ़ी गेट का बाहर--

ये एक बिल्डिंग का अंदर का चित्र है जो ड्राइंग रूम है जहां पे चारों तरफ सोफा रखा हुआ है स्केच में सेंटर टेबल है।